जो पेड़ शेर की जाली के अंदर नज़र आ रहा हैं यहाँ पे एक जाली दिखाई दे रही हैं जाली लोहे की हैं और अंदर एक शेर --

जैसा कि मैं देख रही हूं कि दिन का समय हो रखा है और यहां पर कुछ तार भी दिखाई दे रहे हैं।

कई सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर नीचे कई घास भी दिखाई दे रही है और यहां पर कुछ लाइटें भी लगाई गई हैं।

जैसा की मैं देख रही हूँ की यहाँ पे पीएनजी ज्वेलर्स लिखा हुआ हैं और यहाँ में नीचे --

और यहां पर एक घर भी दिखाई दे रहा है और एक घर सफेद रंग का भी नजर।

जैसा कि मैं देख रही हूं कि दिन का समय हो रहा है आसमान में कई बादल भी नजर आ रहे हैं।

यहां पर छोटे-छोटे घर भी दिखाई दे रहे हैं और यहां पर एक खंभा भी नजर आ रहा है जिस पर एकलाइट लगी हुई है।

यस बैंक लिखा हुआ है और यहां पर एक काले रंग की गाड़ी भी खड़ी हुई है और यहां पर।

एक आदमी भी नजर आ रहा है।